छोटा सा मंदिर भी है जिसे जिसपे सामने से दो पिलर खड़ा किया गया है।

और एक ऊपर गुंबज टाइप का भी बनाया हुआ है जिसके चारों और पेड़ पौधे हैं।

भी ल लगाया गया है और उसके बगल मे दो पौधे भी लगाए गए है गमले में।

जिसके लाइनिंग बाइ से आम का पौधा लगाया गया है।

इसके आगल बगल पेड़ पौधे हैं।

बगल में एक बिजली का खंभा है और घास पूरा जमे हुए है।

एक ईटा भी रखा हुआ है। उसके बगल में एक तरजू भी रखा हुआ है। जिसके बगल म बगल में भी एक व्यक्ति कुछ समान बेच रहा है।

यहां पे एक बस सर्विस है जिसके सामने एक कार लगा हुआ है।

के सामने एक साइकिल भी रखा हुआ है उसके बगल में बांस का पौधा भी है।

और ये स्कूल रेड और व्हाइट कलर में है।

पानी बहुत कम है और इसके सामने घास पुअरा भी है।

रेड कलर का मंदिर है औ ऊपर वाइट कलर का और उम्म् उस उस के बगल में एक सड़क है और दो गाय बंधे हुए हैं।

जिसमें वो पानी पटा चुका है।

और उसके चारों ओर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और उसके नीचे घास है।